ये किराने की दुकान का अंदर का नजारा है जहाँ एक आदमी खड़ा है करीब उसकी एक औरत है जो कि काउंटर पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है पीछे कोका कोला लिखा गया है।

पंखा ऊपर पंखा लगा हुआ है टाइल्स लगी हुई हैं जमीन पर इसके अलावा लाइट जल रही है दरवाजा बंद है और--

यहां पर एक शो चल रहा है सामने और उसके सामने बहुत से लोग सामनी बैठे हुए हैं कुर्सियों कुर्सियां लगी हुई हैं बहुत से लोग बैठे हैं--